एवं फाइबर के मदद से कुर्सी भी बना हुआ है।

तथा यहां पर एक बे बोतल दिखाई दे रहा है।

जो हम यहां पर बहुत सारे बल्ब लटके हुए हैं।

इसके दीवाल का कलर पीले वॉल पुट्टी से किया गया है।

जिसमे तार पास किए गए हैं यहां पर छोटे छोटे मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।

जो लकड़ी के मदद से खिड़की बने हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

यह एक शादी समारोह का दृश्य है।

यह एक आंगन का दृश्य है तथा यहां पर तीन गाड़ी दिखाई दे रहा है।

एक गार्डन का दृश्य है तथा इसके बगल में छोटे बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इसके जमीन में टाइल्स लगे हुए हैं जिसका मैरून कलर है।

इसका दीवाल का कलर व्हाइट वॉल पुट्टी से किया गया है।

यहां पर एक ग्रीन कलर की घास भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके दूर में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें पीले कलर के पेंट किये गए हैं।

इसके सीलिंग में लोहे के मदद एवम प्लाई बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बाइक सर्विस सेंटर का दृश्य है तथा यहां पर तीन बाइक लगे हुए हैं जिसका कलर ब्लू है।

यहां पर बहुत सारे बेंच दिखाई दे रहे हैं ।

इसके बिल्डिंग का कलर ब्राउन एवं व्हाइट है।

तथा इसके जमीन में कच्ची मिट्टी भी दिखाई दे रहा है।

तथा इसके चारों ओर टावर टेंट एवं व्हाइट कलर के कारपेट तथा ग्रीन कलर के कारपेट लगे हुए हैं।